इक कॉलेज है। इस कॉलेज में बाहर एक बहोत बड़ा गेट लगा हुआ है।

और यह घर बोहोत ही बड़ा है। इस घर के बाहर एक बोहोत बड़ा आंगन है और इस घर में बोहोत सारे कमरे बने हुए हैं और इन कमरों में खिडकियां भी लगी हुई हैं।

यह दुकान बोहोत ही पुरानी है और यहाँ एक आदमी बैठा इन सामानों को बेच रहा है।

ये एक बस स्टैंड है। इस बस स्टैंड पर बोहोत सारी बसे खड़ी हैं और यहाँ पे बोहोत सारे लोग इन बसों में बेठने की लिए आते हैं।